दुकान में बहोत सारा लाइट भी लगा हुआ है।

देखिए एक रूम दिख रहा है।

यह देखिए एक दुकान दिख रहा है दुकान के अंदर बहुत सारे चेयर बिक रहा है।

हॉल में बहोत सारे बे बेंच डेक्स लगा हुआ है।

बहोत सारे पानी के बोतल भी रखा है।

एक आदमी भी है जो काम कर रहा--

यह देखिए एक घर दिख रहा है।

यह देखिए घर दिख रहा है।

बहोत सारे चेयर भी लगा हुआ हैं।

ये देखिए एक सिंगार के दुकान दिखाई दे रहा है।

नारियल का पेड़ भी है।

यह देखिए एक घर दिख रहा है घर जो खंडहर टाइप का है एक फैन भी लगा हुआ है।

यह देखिए एक कपड़ा का दुकान है कपड़ा के दुकान के अंदर बहुत सारे कपड़ा भी रखा हुआ है।